ऊपर में एक लाइट लगा हुआ है दुकानदार ने रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

यह एक जीम है जहां बहुत सारे डम्बल रखे हुए हैं ऊपर में एक फैन लगा हुआ है।

मैगी की पैकेट भी रखी हुई है सैरेलेक्स की पैकेट भी रखी हुई है।

यह कोई पहाड़ी इलाका है जहां पर बहुत सारे चट्टाने दिखाई दे रही है।

और एक औरत भी है और एक छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक ए_टी_एम मशीन है।

और एक आदमी पैसा निकाल के बाहर आ रहा है सामने एक कैमरा दिखाई दे रहा है।

ए_टी_एम के गेट में शीशा लगा हुआ है एक आदमी ने हरे कपड़े का टीशर्ट पहनना है और एक ने सफेद।

बेंच ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है जिसमें एक शीशा भी लगा हुआ है।

कुछ बाईके के भी रखी गई हैं कुछ बाईके घर के बाहर खड़े हैं।

यहां पर एक आदमी है जिसने चट्टान को पकड़ा हुआ है और उसने ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

सामने एक पोस्टर भी लगाया है जिसमें ऑनलाइन फॉर्म आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब सब बनाए जाते हैं। फोटो रिचार्ज मोबाइल रिचार्ज --

पीछे एक काठ का गेट भी बनाया गया है।

उसके साइड में एक खिड़की भी है नीचे में टाइल्स लगे हुए है।

और कुछ बच्चे खड़े भी है। इस्कूल के ऊपर एक टंकी लगा हुआ है।